बिल्डिंग के बाहर दो व्यक्ति आपस में बात करते नजर आ रहे हैं।

सामने बैठने के लिए कुछ दो तीन चेयर्स रखी गई है।

दूसरी तरफ एक छोटा सा गार्डन --

जहां पर कुछ लोग बेंच पर बैठे दिख रहे हैं।

सामने बहोत सारे लोगों के घर और कुछ बिल्डिंग नजर आ रही है चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है।

इस चित्र में सामने एक रेस्टोरेंट नजर आ रहा है।

बिल्डिंग के बाहर एक व्यक्ति घूमता दिख रहा है।

तीन हरे रंग के बेंच लगे हुए दिख रहे हैं।

कुरकुरो के पैकेट रखे गए हैं।

सामने बहोत सारे व्यक्ति खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में सामने एक खुला सा मैदान नजर आ रहा है। इसके दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा गार्डन दिख रहा है।

दूसरी ओर एक छोटी सी शेड है।